एक बाहार आदमी झाड़ू मार रहा है और एक लेडिस है बाहार और बाहर दो गमछे भी दिख रहे है बड़े और गच्ची फुलोंका सजाया हुआ है।

ये गणपति की मंदिर है यहां पर बहुत सारे लोगों सामने बैठे हुए हैं और वो सेल्फी फोटो खींच रहे हैं बहुत सारे खुश दिख रहे हैं।

दोनो खुले दिख रहे हैं और बाजू में ओ अलमारी भी रखी हुई है।

ये एक चील का बड़ा सा पुतला दिखता है जहां पर एक आदमी ठहरा हुआ है और बाजू में बाइक भी लगी हुई है और पीछे घर भी दिख रहा है।

और घर का काम चल रहा है एक आदमी सीढ़ी पर ठहरा हुआ है बाजू में--

कोई भी नहीं है अब छत के ऊपर बहोत सारे डिजाइन बने हुए हैं और आजूबाजू बहोत खूबसूरत सा दिख रहा हैं बहोत अच्छा सा बढ़ा सा घर हैं ।

बाजू मैं लड़का दिख रहा है और एक और एक लड्डू को उठाया हुए है टेस्ट के लिए और बाहर का आदमी भी ठेरा हुए हैं और जिम के कूच सामान भी रखे हुए हैं।

और दुकान बंद बंद हो चुके है शटर निचे हो चूका है।

वीडियो कर रहा हैं पीछे अच्छे खासे बैनर लगे हुए हैं तबीयत खराब होने की किसी की बीमार बुखार बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

यह एक अच्छा सा बड़ा सा बंगला दिख रहा है बाहर से ही जो नाम गोल्डन हॉर्स दिख रहा है और गोल्डन हॉर्स नाम के नीचे--

ये एक बाइक मेकेनिक का कारखाना दिख दिख रहा है जहा दो बाइक रखे हुए है और एक बाइक के उपर आदमी--

बहुत ही सीडिया रखी हुई हैं और बहुत सा सामन दिख रहा हैं पीछे बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं पीछे--

यह एक बड़ी सी गाड़ी दिख रही है जो कहां पर भी एक्सीडेंट हुआ सो गाड़ियां को उठाती है उठा कर इस पार--

उस पर जाती है और ये कहा पर जा रही है और सड़क पे से चल कर बाहर ही --

छोटी-सी कार दिख रही है और साइकिल भी दिख रहे है और आजू-बाजू झाड़ भी दिख रहे हैं और सामने भी हरे-भरे झाड्स है।

और चाहे कि होटल भी है और आदमी टेबल पर बैठा हुआ है बहोत सारे लोग आटो के बाजू में खड़े हुए हैं।

दो आदमी ठहरे हुए हैं और दो बैठ करें जा रहे हैं और ऊपर एक दृश्य दिख रहा है जो गार्डन जो अच्छा दृश्य मुझे वहां है।

तो हमे तो छोटे झाड दिख रहे है जो उसमे बचे हुए हैं रखे हुए हैं आजूबाजू खंबे दिख रहे हैं।

ये कोई साइकिल की दुकान दिख रही है जो काफी अच्छी बड़ी दिख रही है और ये--

और पीछे के आयाने मैं और एक बच्चा दिख रहा हैं और अच्छा खासा जिम कर रहा हैं बच्चा जिम कर रहा है और एक चेयर --

नीचे बिछाई गई है और बिग का नाम लिखा हुआ है।

और दुकान में कोई नहीं दिख रहा है साम सुन दुकान दिख रही है।

और दोनों दुकानों मैं कोई नई दिख रह हैं सामसूँन दिख रहा हैं और उप्पार फन भी लगा हुआ हैं और उधर फन लगा हुआ है।

पीछे एक बोर्ड लगा बाहर और स्टेट पर लेडिस के अलावा और कोई नहीं है।

और जॉर्डन भी दिख रहे है दिख रहे है और बुलडोज़र पीछे जा रही है सुड़क बनाना के लिए यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है सिर्फ बुलडोज़र के अलावा।

यह एक छोटा सा घर दीखता है घर में कोई नहीं दिख रहा है सिर्फ एक कुर्सी--